--पंडाल डाला गया है बहुत बड़े पल्य ग्राउंड पे और वहाँ पे ग्रीन मैट नजर आ रहा और काफी अच्छी तरफ से वहाँ पर डेकोरेट किया है और काफी लोग वहा पर नजर आ रहे और वहाँ पे कुछ साउंड बॉक्स भी दिखाई दे रहे है।